इसके अंदर बहो दो मूर्ति खड़ी हुई है जिसमें साड़ी है।

और सामने पर्दे लगे लगे हुए हैं और दीवार पर पिंक कलर हो रहा है और नीचे फर्श गिरा हुआ है।

और तीन औरत बैठी हुई है कुर्सी पे जो कंप्यूटर चला रही है।

इसके अंदर दो गाड़ियां खड़ी हुई है जो खुली हुई है और बहुत सारे आदमी है।

वो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मेज पे और कुर्सियों पे।

ये एक बस स्टैंड है इसके अंदर तीन बस खड़ी है।

इसके अंदर सामने बहोत सारे लोग है और नाइ की दुकान है।